ये एक लॉन्ड्री शॉप है जिसमें ऑटोमैटिक मशीन रखी हुई है बड़ी बड़ी और यहां पे होटल के रेस्टोरेंट के इनके कपड़े धुलते है अ ईजली --

ये बाहर विदेश की चर्च की फ़ोटो है जोकि आप देख सकते हो बाहर छोटे छोटे बहोत प्यारे प्यारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं इन्होंने--

यहां आप देख सकते हो कितने अच्छे टाइल इनके दुकान में लगी हुई है और छोटा सा एक फ्रिज भी रखा हुआ है।